रोड के बगल में बहुत सारा गढ़ी पार्किंग पर लगाया है।

जिम प्रैक्टिस कराते हुए दिख रहे।

और पार्टी आतिश बाजी पटाको के--

इसके बगल मे एक पहाड़ी है ये बहुत घना है।

मुझे साथ-साथ में उसके मम्मी पापा--

ये स्कूल बहुत फैमस है।

यहां कई प्रकार के यात्री आते हैं।

इस सुरंग के नीचे --